सामने एक ट्रक भी खड़ा हुआ है।

इनके नीचे मैट बिछे हुए हैं।

सागरिका हैंडर प्रतिशत कुदरती समुद्री उत्पात--

दो लड़के यहां नीचे बैठे हैं।

इन बॉक्सेज में फ्रूट डाला जा रहा है।

सामने से सूरज दिखाई दे रहा है।

माइक में लेक्चर दे रही है।

गंडासे जैसी टांग रखी हैं।

कुछ मग्स नीचे उल्टे करके लाइन में रखे हुए हैं।

ये आई_सी_एस सरकारी नौकरी की हंड्रेड परसेंट गरंटी --

सामने काफी सारे बड़े लाइट्स भी लगे हुए है।